साथी में जानवी साड़ी शोरूम है मां ज्वेलर्स है और रेडीमेड साड़ी सेंटर

इस चित्र मे हमे जिम दिखाई दे रही है जहां पे अलग अलग मशीने रखी हुई है| जिससे वर्कआउट होता है।

साइड में हमें फूग्गे दिखाई दे रहे है जिसका कलर व्हाइट रेड और आसमानी है।